दो टिक्के भी हैं एक साइड वाला है।

और दो गाड़ियां हैं एक वाइट कलर की दूसरी व्हाइट --

और जाली वाला गेट भी लगा हुआ है।

और इसका कलर व्हाइट है और पेड़ भी हैं और ग्रीन कलर की घास है सड़क भी जा रही है शीशे भी लगे हुए हैं।